विश्व वगैरा भी लगे हुए हैं एक झंडा भी लगा हुआ है।

ये एक रूम है रूम के अंदर बहुत सारे बेड लगे हुए हैं और बहुत सारे गद्दे थे पिलो भी रखे हुए हैं।

और सिल्वर कलर का भी ऊपर लगा हुआ है लाइटस लगी हुई हैं एक गेट भी लगा हुआ है।

यहां एक नदी बनी हुई है। बहोत सारी वृक्ष वगैरा और छोटे-छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

एक पेंगुइन की मूर्ति भी लगी हुई है बाहर और एक सावर भी लगा हुआ है बहुत सारे पेड़ पौधे और लाइट्स भी लगी हुई हैं।

वाश बेसिन भी लगा हुआ है यहां पे फ्लावर भी लगे हुए हैं लाइट्स और कैमरा भी लगा हुआ --

वृक्ष भी लगा हुआ है एक--

परदे भी लगे हुए हैं यहां पे एक टीचर खड़ा कु--

ये एक पारक है पारक के अंदर बहुत सारे वृक्ष वगैरा लगे हुए है और फ्लावर वाले भी पौधे लगे हुए हैं।